में रेलवे स्टेशन के अंदर का दृश्य नजर आ रहा है जहाँ प्लेटफार्म पर कुछ व्यक्ति अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए नजर आ रहें हैं।

यहाँ हमें ऊँचे-ऊँचे पर्वत नजर आ रहें जिसके बिचे बीच में से कई झरने बेहते हुए ऐ दिख रहें हैं। जो झरने नीचे आके एक नदी में मिल रहें हैं।

और उसी के साइड में हमें छोटा पहाड़ नजर आ रहा है जिसपे कुछ झाड़ियाँ वगेरा उगी हुई है ऊपर नीला आसमान नजर आ रहा है।

यहाँ हमें एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है जिसमे कुछ लड़कियां योगासन करती हुई नजर आ रही हैं।